जहां पर लोग पैसे एक्सचेंज करवाने आते हैं और एक साथ बैग उठाएं उस तरफ जा रहा हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ--

इंतजारगाह में बैठे इंतजार कर रहे है जिनमें मर्द और ख्वातीन भी है।

जय श्री राम रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और ऊपर से बारिश हो रही है।